प्लान्ट लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमें कुछ कटोरे वगेरा लोहे के दिखाई दे रहे है यहाँ पे नलिया वगेरा नल दिखाये गए है यहाँ पे और पानी भरा हुआ दिखाया गया है।

ड्रम दिखाए गए है टूटे हुए आधे कट्टे यहा पे हुए बालू रेट गिट्टी और नलिया और उबास वागेर दिखाए गए है बहुत सारे व्यक्ति खडे हुए दिखाये गये है।

यहाँ पर पक्ष लगा है | पक्ष मे कुछ लिखा हुआ है ।

पीछे एक चर्च दिखाया | चर्च का कमरा बताया गया है | यह कमरे में अन्दर एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है जो--

यहाँ पे पीछे गणेशजी की मूर्ति दिखाई गई हैं | स्टेज पर जिसके पीछे परदे से टंगी लगी हुई दिखाई गई हैं | यहाँ बहुत सारे फल-फूल दिखाए गये हैं पत्ते दिखाए गये हैं | नीचे कारपेट --

ग्रीन कलर का दिखाया गया है | यहाँ पे सफेद नीला कलर का पेट्रो पर्दा दिखाए गये हैं | यहाँ पे स्टूल दिखाया गया है | एक सोफा रखा है जिसपे वो दो व्यक्ति बैठे दिखाए गये हैं।

बहुत सारे बच्चे बहुत एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है लेडिज वागेरा है यहा पर पीछे एक कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है उपर डिजाइन वगैरा लगी हुई घड़ी वागेरा लगी हुई है यहाँ पर ।

यहाँ पे एक ऑटो दिखाया गया है जिसमें बहुत बड़ी चाबी दिखाई गई है यहाँ पे |

गेट बना हुआ दिखाया गया है| गेट को रेड कलर से पुता हुआ यहाँ व्यक्ति वो दिखा गया है| यहाँ पे वे फोटो खिचाते हैं यहाँ पे सामने पीछे की ओर गेट दिखाया गया है।

बड़ा समंदर दिखाया गया है जिसमे बहुत बड़ी नाव दिखाई गई है नाव के पास यहाँ पे रस्सी से बांध के रखा गया है नाव पे जा के पानी में नहीं जा सकते अब एक व्यक्ति ने रस्सी को पकड़ रखा हुआ है।